और ये अच्छा रूम है क्लीन है और लाइटिंग भी है।

और बहोत सुंदर डेकोरेशन किया हुआ--

स्टूल पे बैठा हुआ है एक स्टूल के पास खड़ा हुआ है दूसरा कोई फर्नीचर पे कर रहा है।